नीचे उसके धुवाँ बिच्छी हैं और साइड में जालियाँ लगी हैं और फिर पीले और काले कलर की पत्थल लगे हैं ।

यहाँ पर एक स्कूल टाइप का बना हुआ है एक बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी सी बिल्डिंग । उसके बाहर बाइकें खड़ी हुई हैं लाइन से और एक एक इंसान जो जो खड़ा हुआ है।

बगीचा पूरा जंगल एरिया है। पूरा बगीचा बना हुआ है। हरा कलर से हो रहा है। पूरा हरा-हरा हो रहा है। इसमें बोहोत सारे घास ही घास लगे हैं। हरे कलर के पेड़ लगे हैं।

इसमें मिट्टी लगी हैं लाल कलर की इसमें बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं। सीमेंट की दिवार होती हैं इसमें पत्ते लगे हैं इसमें बोहोत सारे।